जिसमें एक आदमी माइक से कु--

पेन रखी है और बुक भी र--

घर बन रहा है।

ए बहुत सारे--

यह एक बहोत बड़ा--

खड़े हैं और दो --

जीयम फ्रिज वाशिंग मशीन ऐ--

यहां पर दो बाइक लगी है और बिल्डिंग पीला कलर से र--